छत पे पाइप निकली हुई दिख रही है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर नयन लिखी हुई है।

के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में एक कैफे दिखाई दे रही है।

दृश्य मे एक मस्जिद दिखाई दे रही है जिस मस्जिद के अंदर जनमाज बिछाये हुए हैं।

जो कि कलरफुल जैसे व्हाइट ऑरेंज --

दो बस लगे हुए हैं जिन पे मैंवारी कॉलेज लिखा हुआ है।

एक घर नजर आ रहा है।

कुछ स्कूटी और बाइक पार्क किए हुए हैं।

हो रही है जिसपे रिबन लगे हुए हैं।

नीचे कार लगे हुए हैं बाइक लगी हुई है बहुत से व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पीछे पथरी से डेकोरेशन की हुई है।

दृश्य में एक तालाब दिखाई दे रही है।

बहोत सारे छोटे छोटे घास लगे हुए हैं और बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

एक व्यक्ति ब्लू कलर की शर्ट पहन कर बैठा हुआ है।

के अंदर दो बेड लगे हुए हैं दोनों बेड के बेडशीट व्हाइट है।

इस दृश्य में एक शोरूम दिखाया गया है जो कि हीरो बाइक का शोरूम है।

इस पास छोटे छोटे पौधे और बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये जो घर दिखाई दे रही है।

इस घर के छत पे काम चल रही है।

पार्क के अंदर एक शो पीस बनी हुई है घोड़े की और उसके ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक भाला है।

एक महिला खड़ी दिखाई दे रही।

वहां पे बिग बाजार शॉपर स्टॉप जैसे बैनर लगे हुए है।

एक साड़ी टांगी हुई हैं।

एक जी पे का स्कैनर रखा हुआ है।